इस दृश्य में एक हॉस्पिटल दिख रहा है जिसमें फीमेल जनरल वार्ड के नाम से है।

कलर के खुर्शी पे बेठे हुए हैं और साथ में सामने के तरफ एक मंच दिख रहा।

काले रंग के जूते पहेने हुए हैं और निचे एक मग्गा रखा हुआ है उनके पास।

ये चित्र में बहुत बड़ा बगीचा दिख रहा है जिसमें कि बहुत ऊँचे-ऊँचे नारियल के झाड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक छत से जो है भव्य मस्जिद दिख रही है।

यह चित्र किसी नदी के किनारे का दिख रहा है। जिसमे एक बड़ा सा पत्थर है। उसपे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने है।

लाल रंग का है और इस मकान में सीढ़ियाँ दिख रही हैं दो आदमी खड़े हुए दिख रहे हैं।

यह चित्र मे एक होटल दिख रहा है स्वर्ग नाम का जो की काफी बड़ा है यहां सीढ़ियां दिख रही है।

और इसके साइड में लिखा हे एस.एस.सी. ।